और यहाँं पर फ्रिज वगैरा फ्रिज रखे हुए हैं। वाशिंग मशीन रखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक का आरन रखा हुआ है। अ म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है।

सटर जिनकी डाउन है हम्म शॉपस की और एक सामने एक महापुरुष की स्टेचू बना इसमा बना हुआ है जो --

यहां पर एक ब्रिज बनाया हुआ है जो ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के उस साइड में नदी अ नदी बह रही है जो नदी के बीच में से ब्रिज खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक मन मंदिर है बड़ा सा मंदिर है। बहुत बड़े एरिया में मंदिर बना हुआ है यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत सारी --

यहाॅं पर एक जिम है और जिम में हम एक्सरसाइजइंग मशीन रखी हुई हैं जो एक्सरसाइजइंग साइकिल्स वगैरह रखी हुई हैं।

कुछ मिट्टी वाला अं-साइड में इ-मिट्टी आला मेदान पड़ा है जहाँं पर मिट्टी हो रही है और अह् एक सामने एक और बिल्डिंग है।

ब्रिज के ऊपर एक ट्रक आ रहा है और ब्रिज के नीचे साइड में कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं पानी में।